हवाई जहाज मीनार कलर का हैं।

बहुत सारा लकड़ियाँ है आदमी है।

तालाब और बहुत हरा-भरा है।

बड़ा बड़ा मछली हैं मछली खरीदने आये हैं।

ई लोग मछली खरीदने खरीदने आया है।

बोहुत बड़ा सा यहाँ पे घर हैं एठो।

इनके पास एक आदमी है साइकिल ले के साइकिल में बहुत --

एक बड़ा जंगल है और जंगल हरा-भरा है। बहुत अच्छा है दिखने मैं। बड़ा जंगल है।

ये कैसा कलर का है ये पानी।

मिठाई भी चढ़ाया हुआ हैं बहुत सारा सामान भी है।